पीले कलर का और एक पेंट दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ एक गेट लगा हुआ है।

विडिओ में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ बहोत सारी छोटी छोटी घासे मैदान के ऊपर दिखाई दे रही है।

यहां पे ये कच्ची मिट्टी की रोड दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है।

और किताबो का रंग विभिन्न विभिन्न है।

जो सफेद रंग का कलर दे रही हैं।

एक लड़का बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसे सत्ताईस छब्बीस छब्बीस चौबीस उन्नीस अठारह सत्रह --

और रंग बिरंगी लाइटे जल रही है।

कट्टे पीले कलर के हैं कुछ कट्टे सफेद कलर के हैं।

यहां पर नीचे एक सफेद कलर का तिरपाल बिछा हुआ है।

उसके ऊपर बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई है।

बच्चों ने मुँह पे कलर लगाए हुए हैं और बहुत सारे नाटक की तैयारी कर रहे हैं।

रोड मिट्टी व घास से भरी हुई है।

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है और सामने कुछ और बले बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ में पपीते कुछ में तरबूजे रखे हुए हैं।

यहां पर एक रंग बिरंगे चकरे में लाइटे दिखाई दे रही है।

यहां पे एक आदमी बड़ा सा शंख बजाते हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे ऊपर की ओर पंखे चलते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक मिट्टी का एक कच्चा मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने ये कुछ लिसा पोता कुछ ना लिसा पोता घर दिखाई दे रहे हैं।

जिन पे शिशो की खिड़कियां बनी हुई है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां व मेज पड़ी हुई है।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

पीछे की तरफ बिजली के खम्बे से बि तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे नीचे की तरफ बहोत सारी इट्टियां पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जो रंग बिरंगे कलर की है कुछ सफेद है कुछ हरी है।

कुछ आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी ने हाथ में लाल कलर का बैग ले रखा है।

पीछे की तरफ एक कुटिया दिखाई दे रही है जो पीले कलर की है।

सामने की तरफ ये पीले कलर का झंडा दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक फर्श दिखाई दे रहा है।

साइडो में छोटे छोटे गमलोें बहोत सारे फूलों के पौढ़े लगी हुई हैं।

यहां पे एक लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर पीले कलर की दीवाल पर अंबुजा सीमेंट लिखे हुए दिखाई दे रहा है।

व अंदर की ओर हरे रंग का पेंट हो रखा है।

आगे की तरफ सीमेंट का एक फर्श दिखाई दे रहा है।

यहां पे सामने सफेद बोर्ड पे लाल अक्षरों में निशांत गारमेंट्स दुर्गा जी जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

साइडो में बहोत सारी मछली हो रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक टावर लगे हुए हैं।

और पीछे सूरज की रोशनी बहोत तेज दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारी मशीने रखी हुई है।

एक मोटरसाइकिल ब्लैक व नीले कलर की है।

नीला आसमान और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो लाल कलर की है।

आगे वाले लड़के ने हाथ में नीले कलर का फोन ले रखा है।

इसमें चेक टी शर्ट डाली हुई है नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए हैं।

बीच में जो पीछे दो लड़के खड़े हैं उनका दोनों का मुंह ब्लर है।

स्तंभ पे बहोत सारी आकृति बनी हुई है।

पीछे की तरफ गुब्बारे लटके हुए हैं।